साफ सुथरा एरिया है और साइड में बीच में कियारी बना बना के फूल वूल पेड़ पौधे से हो रखे हैं आगे में मूर्ति भी है।

और कच्चा एरिया है ये एक जू की फोटो दिख रही है लकड़ी सी भी सजा र--

लकड़ी के ये उम बेंच से में इसमें दीवार से बनाया ताकि एक दूसरे को देख ना सके आराम से पढ़ाई कर सके।

हमारे यहां --

और देख सकते हो आप अ घर भी बना रखे है बीच बीच में डेकोरेट कर रखा है बहुत अच्छा--

देख सकते हैं आप इसमें मूर्ति वुर्ती भी दिखाई दे रही कई सारी और लगातार ये एक दो तीन चार पांच--

और अह दीवार पे टैटू अह टैटू की दुकान सी दिखाई दे रही है और साइड में ये वीडियो बनाने के लिए इसका स्टैंड भी दिखाई दे रहा है फोन का।

और साफ सुथरा एरिया है और ये म्यूजियम का एरिया लग रहा है मेरे को।

सफेद रंग के इन्हें कपड़े पहन रखे हैं सारे ने और ये अपने जादू दिखान लाग रहे हैं।

और कई सारे सिलेंडर रखे हुए हैं स्टोव फायर है फायर के वजह से ये--

लाल सा भी कुछ है ये पं मशीन सी है जिसपे आवाज निकला है कि यहां आग लग गई देख लो।

स्टूडियो है। किसी चीज का यह और इसमें लो पार्टनर्स का लिखा हुआ है और काफी अच्छी बिल्डिंग बड़ी सारी बिल्डिंग है इसमें और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं खिड़की दिखाई दे रही है।

और प्लस एर इसमें लाल लाल सी पेंट सा कर रखा है।

पार्क की फोटो दिखे इसमें जिसमें घोड़े गाड़े के स्प्रिंग से दिख रहे हैं और बालका के खेलन का पार्क है यो पेड़ पौधे दिखे है हरे भरे --